डमी में कपड़े रखे हुए दिख रहें हैं लाइट दिख रही है छत्त दिख रही है येलो क्लर की।

सीढ़ी रखी हुई है दिख रही है और सामने बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है ग्रे कलर के बांस--

पर्दा लगा हुआ है ग्रीन कलर का खिड़की लगी हुई है बड़ा सा पेड़ दिख रहा है।

सामान रखी हुई दिख रहें हैं और छत्त दिख रही है पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है जिसपे कॉफ़ी लिखा हुआ है।

सीढ़ी लगी हुई है मंदिर दिख रही है ऑरेंज कलर का पेंट पोता हुआ है पेड़ पौधे-दिख रहे है बादल दिख रही है।

रेलिंग लगी हुई दिख रही है ब्लैक क्लर की खम्भे दिख रहें हैं बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहें हैं।